सामने कैची रखी हुई दिख रही है।

और बहुत मेडिकल दवाइयों वाले प्रोडक्ट दिख रहे हैं।

जो सफेद और काले कलर के पेंट पहने हुए है और एक सीढ़ी रखी है जो सफेद कलर की है।

और एक महिला ऊपर से नीचे आ रही है।

डिज़ाइन वाली हुई ये छत बना हुआ हैऔर छत में ही कुछ लाइट लगी हैंजो सफेद कलर की हैं।

और मकान में कुछ खिड़कियां दिख रही हैं।

और बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है जिसकी पत्ती हरी-हरी दिख रही हैं।

और बहुत सारे घर दिख रहे हैंऔर एक लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है और एक महिला खड़ी हुई--

और नीचे जमीन का रंग ऑरेंज है।

और एक बड़ा सा पेड़ है और सामने एक मकान बना हुआ है।

मकान के जस्ट बगल में ही कुछ घास--

गेम गए लिखा हुआ हैऔर बोर्ड के आगे ही कुछ सीढ़ियां कुछ--

पेड़ हुए हैं एक छपड़ा टाइप का है पेड़ के बहुत सारे पेड़ हैं कुछ आदमी दिख रहे हैं।